शीशे तीनों का परछाई बना रही है।

इसके अंदर छोटे छोटे फूलों का बगीचा भी है।

और अस्पीकर भी सजाया गया है।

यह आयताकार गार्डन है जो की बहुत खूबसूरत तरीके से सजाए गए हैं।

यहां पे इमेज बना हुआ है और बहुत बड़े पर्दे पे यहां पे लगा करके चिपकाया गया --

दिल का स्टीकर भी लगा हुआ है और एक इमेज है जो की गनेश जी का है।

एक लोग माथा में गमछी भी बांधे हुए हैं।

यह नाई का सैलून है जो कि सैलून लिखा गया है।

व्हाइट और ब्लू बैलून से दुकान का दरवाजे जो मेन गेट हैं उसको सजाया गया हैं।

उन दुकान के बाहर बाइक खड़े हैं।

यहां पे बहोत सारा व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं और जो कि वो सब बैठे हुए हैं।

सभी का ड्रेस वाइट है।

डब्बा भी रखा हुआ है और यहां पे बल्ब भी लगा है।

दोनों बगल में कुर्सी भी लगे हुए हैं एक कुर्सी पर बैठा हुआ है एक कुर्सी खाली है।

यह मकान है इसके नीचे तीन फोर व्हीलर खड़े हैं।

बस के पीछे बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।